ये स्टील के बर्तन बनाने वाली जगह है और इस पे बने हुए कुछ बर्तन पड़े हैं।

ऊपर ये दो कार्टून लगे हुए हैं और ये खूबसूरत एक होटल --

के साथ लाइनें लगाई गई हैं ये खूबसूरत पिच है पिच मिट्टी की बनाई गई है पिच के इर्द गिर्द --